पी.एन.बी. बैंक पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे उसका ए.टी.एम. भी लगा हुआ है सामने दीवाल पर बहौत सारे पेड़-पौधे लगे --

बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हजार लोग --

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ी सी टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर तीन प्लेट राखी हुई दिखाई दे रही --

बने हुए दिखाई दे रहे हैं सामने अच्छा गार्डन बना हुआ है जहाँ पर कुछ गमले रखे हुए हैं और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

तालाब के किनारे एक मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है उसके आस-पास पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।